और सामने एक एल_सी_डी है और एक आदमी ऊपर चढ़ा हुआ है और उसने--

और ब्राउन कलर की अपर और ब्लैक कलर की पेंट पहनी हुई है और उसके पेरो में जूता है और उसके बालो का रंग काला है।

और वो ब्लैक कलर का है और उसपे कोई नंबर दिया हुआ है और इसकी सीट्स ब्लैक हैं और ये--

है और उसने पैरो में चप्पल पहनी है और उसके सर पर बाल नही है उसने मास्क पहना हुआ है और उसने --

ब्लू कलर की टी-शर्ट और ग्रे कलर का पेंट पहना हुआ है और उसकी सर पे ब्लू कलर की पगड़ी है हाथ में गन है और कड--

खिड़की पे कर्टंस लगे हुए हैं जोकि ब्लू कलर के हैं और यहाँ पे स्विचेस हैं।

ये एक शॉप है और यहाँ पे खिलौने और मोबाइल का वो ज़ है और ये यहाँ पे ए ए--

डॉल्स हैं अ छोटे छोटे बच्चों को के लिए और यहाँ पे अ कुछ बै--

और पैरेट कलर के है और वॉल पर एक क्लॉक लगा हुआ है और फैन है और एक पेपर माला है।

पुल निकले हुए है और यहाँ पे बिग ट्रीज भी है और यहाँ पे रेड कलर की फुल भी--

दो आदमी बैठे हुए हैं और अ रेड कलर की चेयर्स हैं और एक यलो कलर का बेंच है।

पेपर्स है और दो एक लड़की खड़ी हुई है जिसने अ रा ब्लैक कलर की फ्रॉक पहनी हुई है ।

पैरों में जूता पहना हुआ है और सामने एक बाइक वाला नज़र आ रहा है।

और उसने व्हाईट कलर की ई शर्ट और ब्लैक पगड़ी पहनी हुई है और एक यलो कलर की बस दिख रही--

ये एक आदमी खड़ा है और इसने मैरून कलर की टी शर्ट पहनी हुई है और ब्लू कलर का पैंट है।

के हाथ में घड़ी है इसके पैरों में पिंक कलर की चप्पल है और वो किसी ब्रिज पे खड़ा है और पीछे बहोत सारे पेड़ नजर आ रहे है।

येलो कलर की बस है और इसके सामने एक आदमी है उसने वाइट कलर शर्ट और लाइट ब्राउन कलर की पेंट पहनी हुई है और उसने हाथ में घड़ी पहनी हुई है।

और उसके बालो का रंग काला है और विक और यहाँ पे बस में बहोत सारे लोग है ।

एक पेड़ नज़र आ रहा है और यहाँ पे अ इन गायो पे धुप खिली हुई नज़र आ रही है ।

ये यहाँ पे साइकिल्स हैं और इनपे अ एं पॉलीथीन लगा हुआ है और ये एक शॉप है।

और ये ए ब्लैक कलर की साइकिल है ए रेड इसकी ट्यूब का टायर अ अ टायर ट्यूब है।

वाल पे ए ए हेडफोन्स रखे हुए है और ब्लू कलर की चेयर्स हैं डस्टबिन हैं।

ये लीची है और ये क्रेट पे प्लेट है और ये पिंक कलर की है अन्दर से वाइट कलर की निकलती है ।

और ऊपर मालाए हैं और स्पीकर्स हैं और यहाँ पे ए--

शीशे के पास दूसरा रूम है वहाँ भी बहोत सारे बोट नज़र आ रहे है और एक आदमी है उसके सर पे सफ़ेद बाल है ।

घर है और यहाँ पे काम चल रहा है एक ब्राउन कलर की कुर्सी है और एक आदमी के हाथ में में मेजरमेंट है और ये--

पिंक कलर की शर्ट और अ ब ब ग्रे कलर का पैन्ट पहना हुआ है इसके बालों का रंग--

यह एक लाइब्रेरी है और यहाँ पर बुक्स भरी हुई है शेल्पों पर और यहाँ पर डिफरेंट किस्मो की बुक्स है।

और उसे एक छोटी लड़की है उसको ब्लू ड्रेस लगाके हैं।

ये एक लड़की स्टेज पे डांस कर रही है और इसने कमर बंध लगाया है बाजु बंध लगाया है ।

के माथे माथा पट्टी है इसने हाथो में चुडिया पहनी हुई है और इसने तिलक किया हुआ है और इसने --

औ उँ उ गजरा लगाया हुआ है और इसके पीछे एक बोर्ड है।

ये एक आदमी कुछ काम कर रहा है किसी प्लास्टिक दीवार के साथ और इसके हाथ में कोई समान है।

और यहाँ पे एक विंडो है और फर्श पे मार्बल लगाया गया है और यहाँ पे एक--

और हाथ में एक कडा पहना हुआ है उसके बालों का रंग काला है और पीछे एक टीचर है।